तो जैसा कि आप--

है यहां पर--

तो जैसा कि आप देख सकते है यहां पर--

पे हैं। यहां पर बहोत--

एक जैसे कपड़े पहेन कर--

और यहां पर बोहोत सारे फ्लावर्स रखे गए--

तो जैसा कि आप--

हैं जैसा कि आ--

और यहां पर बोहोत सारी लाइट --